सामने यहां पर पोश्टर भी लगा दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पर एक व्यक्ति गाना गाता हुआ नजर आ रहा है।

जहां पर टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर गेट भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ पैकेट्स भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

सामने यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।